व होटल का नाम बहोत बड़ा बड़ा पड़ा हुआ है वह पिंक कलर का है कुछ लाइट भी जल रही--

और मंदिरों के ऊपर कुछ लिखा भी है।

तरफ बाउंड्री भी खींची हुई है और पेड़ भी दिखाई पड़ रहे हैं।

खंभे भी खड़े लगे हुए हैं और बहोत निकले हुए हैं।

नीचे की तरफ स बाउंड्री अ गैलरी से निकली हुई है और नीचे एक खेलने वाला प वो बना हुआ--

आने बाने ईटें से बिछी हुई हैं और हरियाली भी साफ नजर आ--

और पंखे भी लगे हुए हैं और शीशा भी एक बड़ा लगा हुआ है।

यह एक मस्जिद लग रही है जो सफेद और हरे कलर की पुती हुई है।

एक संपूर्ण सूखा सूखा पेड़ दिखाई पड़ रहा है और इस गड्ढे में हल्का हल्का कूड़ा भी पड़ा हुआ है।

कुछ मिस्त्री लोग अं टटरा सा बिछा रहे हैं और चार पांच--

बहोत सारे ब्याल्युन भी लगे हुए हैं जो सफेद और लाल कलर के हैं।

महाराज ने पी पिंक कलर का धोती पेहन रखी है।

इस तरफ एक आदमी खड़ा हुआ चादर ओढ़ रखी है एक घंटा--

ऊपर जो टिन सी पड़ी हुई है और नीचे की तरफ अअ तार ऐसे निकले हुए हैं।

तार भी बंधा हुआ है और उसपे कमरे पे रूम नंबर चार लिखा हुआ है।

में बहुत सारी कु कुर्सियां रखी हुई हैं जो सफेद और पीले कलर की हैं।

ऊपर एंगल भी लगे हुए हैं और होटल का नाम बहुत बड़ा बड़ा पूरा लाल अक्षरों में पड़ा हुआ है।

यह एक हाथी है और हाथी के ऊपर एक आदमी खड़ा है जो दंडे से वो कर रहा है कुछ अ--